ये एक जिम जिनकी तस्वीर है और जो ये व्यक्ति एक बॉल पे एक्सरसाइज कर रहा है। यह एक्सरसाइज पेट के लिए बहुत अच्छा होता है।

कुछ खड़े होकर के बातें कर रहे है कुछ लोग अपनी ही दुनियाँ में मगन है लेकिन फिर भी सब आना--

यह तस्वीर में यह दिखायी दे रहा है कि --

यह तस्वीर एक स्कूल की तस्वीर दिखाई दे रही है जो कि हम्म जिसमे की सर्वि बच्चे कुछ कु --

यह तस्वीर एक पार्क की है जिसमें की स्लाइडर पे कुछ बच्चे झूला झूल रहे है।

तस्वीर देखने से एक कॉफी शॉप की तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें दो लड़के बैठकर फोटो खींचा रहे है।

चाय या कॉफी होगी और साथ में मैगी के दो बाउल रखे हुए है।

यहां कुछ लड़के या तो आते हुए या जाते हुए दिखाई दे रहे है यह अब कॉलेज में प्रवेश करेंगे।

जिसमें बच्चे कुछ-कुछ अपनी कलाकृतिया बना करके पेश कर रहे है और सिस्टर उन्हे देख रही है।

यह तस्वीर एक रोड की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें की----